कॉफ़ी का मग दिख रहा है जिस में कॉफ़ी भरी हुई है कॉफ़ी का मग अंदर दे सफ़ेद है और अंदर से लाल है जिस पे सफ़ेद कलर से नेस्स कैफे लिखा --

स्कूल में एक वॉच लगी हुई है। ऊपर चद्दर का शेड है। कुछ बच्चे हैं जो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है। एक पानी का उपा रखा हुआ है।